ये एक टूटी हुई कार है जिसका जिसका दरवाजा बाहर टूट रखा है और सामने से प् पूरी कार टूट रखी है। उसके आसपास बोहोत सारे औजार रखे हैं इस कार को ठीक करने के लिए।

यहां पर एक आदमी पेड़ के नीचे बैठके कुछ काम कर रहा है और ये पेड़ छोटे-छोटे हैं जिसके आसपास बॉउन्ड्री है केवल की और ये गांव वाली जगह है और ये दोपहर या फिर शाम का टाईम है।

लाइटनिंग है। अच्छे से पूरा अच्छे से इसको स सजा रखा है।

सामान रखे हैं। डेली उपयोग के सामान जैसे कि ग्लास कोल्डड्रिंक टॉफी वगैरा ये सब।

उस रोड पे एक बाईक वाला जा रहा है और एक और एक रिक्शे वाला जा रहा है।

वहां पे हनुमान जी की बोहोत बड़ी मूर्ति है जो कि आसमान क् आसमान को चूम रही है और यहां पर थोड़े बहोत लोग भी हैं।

अ विभिन्न प्रकार की कैंडल्स हैं पटाके हैं जो कि हम दिवाली में फोड़ते हैं।